जहां काफी स्टाइलिश चश्मे का भंडार है।

जो दुकान देखने में भी काफी --

यह बिल्डिंग काफी ऊंची और अच्छी है।

जिसकी एक क्यू_आर लगी हुई है जो काफी सुंदर है।

फिलहाल इस फोटो में इस दुकान को बंद दिखाया गया है।

यह फोटो एक घने जंगल के बाहर से--

यहां पहाड़ से भी ऊपर स्थित है जो काफी सुंदर है।

कई बस खड़ी हुई हैं जो--

इस फोटो में एक कैन मशीन दिख रही है।

धूप हरियाली हरी हरी घास पर टहल रहा हैं।

काफी भीड़ दिखाई दे रही है। तथा जमीन पर--

यहां किसी मकान के अंदर का फोटो है।

तथा एक मछुआरा इन्हें काट कर बेच रहा है।

कई लोग व्यायाम कर रहें हैं।

और मौसम भी काफी साफ दिख रहा है।

जिसमें कि सजावट काफी अच्छी तरीके से की गई है जिसको--

ट्रक एक ही दिशा में चल रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

तथा मौसम भी काफी साफ है इसमें--

काफी हरे भरे पेड़ पौधे साइड्स में लगे हुए हैं।

यह फोटो एक बड़ी मार्केट --